जहाँ पर देखा जाए तो किले के पिछे एक खम्बा दिखाई दे रहा है जहाँ सफेद कलर का बादल दिखाई दे रहा है जहाँ पर--